ये एक किराने का दोकान है जो कि किराने के दोकान में मैगी मशाला और हॉर्लिक्स सब कुछ रखा गया है कि इसमे रस्सी भी है ।

जो की बहुत अच्छा है ठीक-ठाक है पेंटिंग भी बहुत अच्छा हुआ है इनका खूबसूरत भी लग रहा है देखने मे बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ।

देखने में तो चूना का लग रहा है बहुत अच्छा है ठीक-ठाक है और उसमें गरीब लोग रहते है लोग और बहुत प्यारा लग रहा है यही का सीन देखने मे तो बहुत सुंदर है और अच्छा भी लग रहा है।

दो टंकी है जो की बहुत अच्छा लग रहा पेट्रोल टंकी और दिखने में बहुत खूबसूरत है यहाँ का पंप और खूबसूरत अच्छा भी लग रहा देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ का और बहुत अच्छा से बनाया गया है ।

ये पूरा एथी है ऑटो है यहाँ पर लोग जो कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में सुंदर है सब कुछ ठीक-ठाक है यहाँ पर।

जो कि बहुत सुंदर लग रहा है देखने में और ये पूरा मशीन वशीन लगाया गया है।